यह एक गाड़ी की दुकान है जहां पर गाड़ी को दो लोग मिल कर सही कर रहे हैं दोनों ने अपने --

यहां पर बहोत सारा समान मिलता है यहां पर एक मिठाई की दुकान है यहां पर नमकीन भुजिया वगैरा सब मिलते हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिकस की दुकान है जहां पर बहोत सारा सामान मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स का यहां पर एक कैमरा लगा हुआ है लाइट लगी हुई है और --

यहां पर कैमरा लगा हुआ है पंखे लगे हुए हैं ए_सी लगा हुआ हैं लाइटें लगी हुई है दो खिड़कियां हैं जिसमें से दो आदमी देख रहे हैं ये अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं यहां पर क्यों खड़े हैं।

ये एक अच्छी दुकान है जो नई खुलने जा रही यहां पर बहुत सारा अच्छा सामान मिलता है बढ़िया क्वालिटी का मिलता है।

का एक खंभा बना हुआ है इस पे आगे सीढ़ी लगी हुए हैं और बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं जो है अच्छा पेट्रोल पंप है।

यह एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके आगे दो खंभे लगे हुए हैं उस खम्बो के ऊपर दो हरी झंडिया लगी हुई है इसके आगे गेट बना हुआ है।

कुछ फंक्शन चल रहा है यहां पर यहां पर हरि दरिया बिछाई हुई है पोस्टर लगे हुए हैं पंखा चल रहा है लाइट जल रही है।

कपड़े मिलते है यहां पर बहोत सारे अलग अलग वेरायटी के कपड़े मिल जाते है यहां पर शर्ट्स पैंट्स लोअर टी-शर्ट सब कुछ मिलते है।

अच्छी जगह है यहां पर बहोत सारे बच्चे आते जाते हैं यहां पर बहुत सारे महिला भी आती जाती रहती हैं यह अच्छी जगह है।

हरेक अंदर की साड़ी रेड कलर की साड़ी नजर आ रही है ये एक अच्छी दुकान है यहां पर बहोत सारे लोग आते जाते रहते--